बहुत बच्चे हैं बहुत दूर-दूर से पढ़ने के लिए आते हैं।

दौड़ का तैयारी कर रहे हैं बच्चे लोग वई ऑटो चला रहे हैं भई ये लोग बहोत ही खूबसूरत जगह है।

यह टुटा देवाल देखी जिसमें आ बुक बेचा जाता है पेन बेचता है।

उह-उह जीते हुए वर्ल्ड कप है बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप है।